यहाँ पे जो जाल बना हुआ है। जाल यहाँ पे लोहे का बना है तार के के सामने एक आदमी खड़ा है जिसके सफ़ेद बाल है पीछे पेड़ दिख रहे हैं पेड़ हरे रंग के हैं।

यहाँ पे हमको कपड़े दिखाई दे रहे हैं एक स्टैचू बना है जिसपे हरे रंग का कपड़ा पहनाया गया है और पीली सदरी पहनी है।

एक हमको घर दिखाई दे रहा है जो हरे रंग का पुता है उपर से कोई छत दिख रही है छत पे एक लोहे की इंकल लगे हुए हैं जो की पीले रंग के पुते हुए है। पीछे खिड़कीयां हमको भूरे रंग की दिखाई दे रही हैं।

जो बड़ी सी प्लेट के अंदर रखी है प्लेट जो है स्टील की है इसके नीचे यहाँ पे एक रैक रखी हुयी है रैक जो यहाँ जाली की बनी है जो नीले रंग की है ये मेज के ऊपर रखी है मेज लकड़ी की बनी है पीछे दीवाल दिखाई दे रही है दिन का समय दिख रहा।

एक यहाँ पे बेट नापने की मशीन रखी दिख रही है। एक आदमी का हाथ दिखाई दे रहा है। पीछे यहाँ पे लकड़ी की रैकेट दिखाई दे रही हैं। सफ़ेद रंग की दीवाल दिखाई दे रही है।